सुंदरसी से तस्वीर है जा जो एक झील की तस्वीर है जहा से उपर से झरना बहता हुआ निचे--

पोल नज़र आ रहा है दो तीन सामने मे एक लड़का खड़ा है जो झील की तरफ देख रहा है जिसका पिठ दिख रहा है जो शा व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है लड़का पिछे की तरफ घूमा--

रेड कलर का दिख रहा है धूर मे कुछ डॅम जैसे नज़र आ रहा है पिक्चर बहुत ही धुंधला है सामने मे कुछ घास घुस जैसे नज़र आ रहे जोकी शाडो मे दिख रहे कुछ पत्थर भी रखा हुआ है।

बड़ीसी झील की फोटो नजर आ रही है जहा पे दूर में लग रहा कोई डैम है और दू उसके दूर-दूर में धुंधला सा कुछ पहाड़ जैसा पहाड़ की चोटी नजर आ रही है बीच में कुछ गुम्बद जैसा खड़ा है लग रहा है कोई लाइट हाउस है।

और यहाँ से साइड से सीडी दिखाई दे रही है और यह आदमी है।